बीच में एक गजब का डिजाइन है यह देखने में --

यह एक बर्थडे पार्टी है यहाँ बहुत आदमी --

बर्थडे ए बच्चे मनाने के लिए आये हुए हैं।

एक ट्रेन की पट ट्रेन दिखाया जा रहा है यह ट्रेन --

और इन नदी के बगल में एक मंदिर है वहाँ बहुत आदमी --

और यहाँ बहुत अच्छी तरह से इलाज किया जाता है और यहाँ बहुत अच्छा डॉक्टर भी उपलब्ध --

परीक्षण केंद्र है। यहाँ बहुत आदमी --

मशीन होते हैं जिससे हमारे शरीर --

एक फील्ड का फोटो दिखाया जा रहा है यह फील्ड में --

और यह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बहुत आदमी --

राशन का दुकान है यहाँ सारे --

फोटो दिखाया जा रहा है यह गार्डन में --